और यहाँ पर दीवाल में एसी लगी हुई है और यहाँ पर --

एक ब्लैक कलर में बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर सामने से तीन लड़के रनिंग कर रहे हैं।

अलग ही कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोई जंगल एरिया लग रहा यही देखने में।

पानी भरा हुआ है और यहाँ पे बोहोत सारे --

टंगे हुए हैं और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पंखा भी लगा हुआ है। यहाँ --

और यहाँ पर लाइट्स भी लगे हैं और अलग-अलग टाइप की बुक्स --

यहाँ पर सामने बोहोत सारे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ --

‍‍ प्लेट रख- रखी हुई है।

और बैठी हुई हैं और यहाँ पे इनको देखने से लग रहा है कि यह कोई योगा या एक्सरसाइज --

और यहां पर बोहोत बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने से बादल दिखाई दे रहे और यहाँ --

और यहाँ पे बोहोत सारे लो --